त्रिशूल लेके खड़ी हुई है जिनके बाल और गले मे मालाये दिख रही है आसमान दिख रहा है।

यहाँ छोटी सी चीज की दुकान दिख रही है।

एक के हाथ में चंपू दिख रहा है दूर पर पहाड़ आसमान दिख रहा है |

केले टंगे हुए है तराजू भी दिख रहा हैं।

यहाँ शादी का हॉल दिख रहा है जिसमे वाइट रेड कुर्सियाँ रखी हुई है |

यहाँ छोटा सा चद्दरो का घर दिख रहा है जिसके बाहर बड़ा सा प्लस साईंन --

कच्ची रोड कच्ची जमीन बड़े-बड़े पेड़ और घासे आसपास फुल भी लगे है आसमान दिख रहा है।

दो आदमी दिख रहे है एक टंकी रखी दिख रही है।

दिख रहे है आसमान दिख रहा है फाउंटेन से पानी गिर रहा है।

कार खड़ी हुई है दो टायर दिख रहै हैं।

--के ऊपर बाबा होटल का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

हरा कारपेट बिछा हुआ है कुछ लड़के खड़े हुए है।

सैंडीले रखी हुई है एक आंटी कपड़े भी दिख रहै हैं।

यहाँ छोटा सा ड्रिंक हाउस बना हुआ है जिसमें बड़ा सा --

एक इंसान दिख रहा है पेप्सी --

बैलून सजे हुए हैं रेड कारपेट कुर्सियां दिख रही है।

डब्बे बर्तन दिख रहे है डोर मेट दिख रहे हैं |

तगाड़ी फावड़ा और गिट्टी दिख रही है पाइप भी दिख रहा है ईटो के--